और ये बोहत ही फ्रेश वेज अ फ्रूट्स लग रही हैं और यहाँ पे काफी दुकानें हैं जो के फ्रूट सेल कर रही हैं।

यहाँ आइस बॉक्सेस भी रखे हुए हैं जिस मैं काफी आइस है।

यहाँ पे सामने एक नोटिस बोर्ड भी दिख रहा है जिससे लगता है की ये किसी बिल्डिंग के काम के लिए नोटिस है यहाँ पे काफी ब्रिक्स रखी हुई है और बहुत सामान फै--